बस मे सीसे के खिड़की के पर्दा लगा हुआ है और बस के इस एक पीले कलर का घेरा हुआ लगा है और गमले मे वृक्ष लगा हुआ --